और शायद एक आदमी भी खड़ा हुआ हैं रेड कलर का कुछ हां एक रेड कलर की टी शर्ट लेहनी हुई लड़की भी खड़ी हुईं है आई थिंक --

यहां फ़्रॉक्स भी टंकी है और ये पुतला खड़ा हुआ है।

आदि प्रकार के यहां बहोत ही प्यारे प्यारे समान मिलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक --

यहां पर लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर सजे हुए हैं उनके कपड़े बहुत ही प्यारे लग रही है येलो कलर के फूल माला पहने हुए हैं।

ये एक बहोत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जहां पर झरना जैसा पानी गिर रहा है आजू बाजू पथरीली जगह है।

ये एक कैफ़े है हैना जहां पर कॉफ़ी वगैरा मिलती है और कुछ व्यक्ति बैठे हैं लाल चेयर है।

ये एक जूते चप्पल की शॉप है जहां पर जूते चप्पल मिलते हैं एक हमारे सामने चित्र पर--

हमारे सामने एक ट्रेन है जो रेड व्हाइट और ग्रीन कलर की है मतलब तीन रंग में डिवाइड है।

ऊपर सीलिंग पर पंखे भी हैं कुर्सी टेबल है और मार्बल्स भी लगे हुए हैं यहां पर।

यह एक कंप्यूटर रूम है जहां पर नीले कलर की बहुत सारी चेयर रखी हैं।